ये एक क्लास रूम है जहां की टेबल दिख रहा है लगा हुआ दो तस्वीरें भी लगी हुई है।

ये जामा मस्जिद है जहां कि लोग बैठे हैं और कई लोग खेल रहे हैं।

जा रहे हैं एक नाव वाला--